और ये बीच में एक काफी सारे जो प्लेयर्स है वो भी दिखा रखे हैं।

ये एक कोई फोटो है ओ दिखा रखी है।

घर है इसके ऊपर पेप्सी की जो है वो एडवरटाइजिंग की गई है और ऊपर जो है वो फैन वगेरा दिखा रखे हैं।